कार रखी हुई दिख रही है। कार व्हाइट कलर की दिख रही है और यहां पर कुछ पर्सन दिख रहे हैं। एक पर्सन जाता हुआ दिख रहा है और एक पर्सन बाइक कार के अंदर कुछ कर रहा है।

बैठी हुई दिख रही हैं। एक लेडीज बैठी हुई दिख रही हैं। एक जेन्स बैठा हुआ दिख रहा है उसने ब्लैक कलर की चप्पल पहन रखी है और गले में टॉवल रखा है जो व्हाइट कलर का है उसके हाथ में कुछ कागज है।

ये कुछ रखा हुआ है। खाने लिए कुछ बिरयानी सी रखी गई है और यहा पर एक ग्लास रखा हुआ है। ग्लास स्टील का ग्लास दिख रहा है और काफी सारी चैयरे लगी हुई हैं यहाँ पर।

दिख रहा है। पर्सन साइकिल पर जाता हुआ दिख रहा है। व्हाइट कलर के ड्रेस पहन रखी है। उसने माक्स लगा के रखा है ब्लू कलर का और एक सामने पोस्टर है। पोस्टर जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ हरे कलर के दिख रहा।

आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का एक बिल्डिंग दिख रहा है काफी ऊंचा दिख रहा है सामने एक रोड़ दिख रहा है और काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिख रहे हैं सामने |

और इसके सामने वो वो बैल्ट रखे हुए दिख रहे हैं शॉप के सामने काफी सारे और ये शॉप जो है इसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर व्हाइट कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

सारे बच्चे दिख रहे हैं। बच्चों ने अलग-अलग कई तरह के कपड़े पहने हुए हैं ड्रेस पहन रखी है। किसी ने ब्लू कलर की पहन रखी किसी ने रेड कलर की पहन रखी है किसी ने व्हाइट कलर की पहन रखी है।

दिख रहा है जो काफी नीचे पैड दिख रहे हैं कुछ और कुछ पैड हरे दिख रहे हैं कुछ घास दिख रहीं हैं हरे कलर की और काफी ओ नीचा दिख रहा है और आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का कुछ बादल दिख रहे हैं व्हाइट कलर --

एक बिल्डिंग दिख रहा है छोटा सा। उसपे टू गेट लगे हुए दिख रहे हैं। एक विंडोज़ दिख रहा है और सामने कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं जो चेयर लगा कर बैठे हुए हैं। काफी सारे पेड़ दिख रहे है। पेड़ हरे कलर के दिख रहे हैं।

बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग काफी पुराना दिख रहा है। बिल्डिंग के सामने जस्ट गेट दिख रहा है और गेट के अंदर कुछ घासें दिख रही हैं। घास हरे कलर की दिख रही है। कुछ छोटे-छोटे पौधे भी दिख रहे हैं।

और सामने इसके कुछ घास दिख रही है। घास हरे कलर की दिख रही है। कुछ सूखे पेड़ दिख रहै है। कुछ पेड़ दिख रहै है जिनकी पत्तियां हरे कलर की दिख रही हैं और आसमान दिख रहा है ब्लू कलर का।